बगल में ही एक लोहे का लाल कलर का कुछ सामान रखा हुआ है।

यहाँ सामने मकान दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर कुछ अलवारी कटी हुई है।

ऊपर झंडे टाइप के लगे हुए हैं और कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

यहां सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और पहाड़ के नीचे कुछ झोपड़ियां भी बनी हुई हैं।

यहां सामने एक दीवार दिखाई दे रही है जिसका रंग पीला और लाल है।

उन लोगों ने पैरों में चप्पल पहनी हुई है। एक डिब्बा भी रखा हुआ है।

यहां पे एक बैनर भी लगा हुआ है जिस पे पावर ट्रक फोर थ्री नाइन प्लस लिखा हुआ है अब तक का महाराज।

यहां एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका नाम किडजी है। कुछ कुर्सियां स्टूल रखे हुए हैं। यहां पे बोहोत सारे रूम है। सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे --